ऊपर में ट्रिमर भी रखा गया है।

उसके सामने में एक फोटो लगा हुआ है जिस पर माला चढ़ा हुआ है।

यह एक जंगल है जिसमे बहोत सारे पेड़ है जो हरे भरे हैं।

सामने एक आदमी खड़ा है बीच मे एक पीलर है।

उसके पीछे में नदी है।

एक घर बना हुआ है घर के बगल में एक व्यक्ति जींस पहन के खड़ा है।

इस फोटो में दो घर दिख रहा है।

सड़क पर एक वैन जा रहा है जो वाइट कलर का है।

उसके ऊपर चार पेपर लगा गया है।

यहां बहोत लोगों का भीड़ है और एक व्यक्ति फोटो ले रहा है।

पुराने से घर में चार दरवाजे हैं।

गेट पर बरनवाल सेवा सदन लिखा हुआ है।

एक लेडीज हैलमेट लगा के बैठी है।

आगे में एक व्यक्ति खड़ा है।

एक आदमी हाथ में फोन लिया हुआ है।

एक आदमी ने व्हाइट शर्ट पहना हुआ है जिसके हाथ में वॉच भी है।

इसके मेन गेट पे एक व्यक्ति खड़ा है वो भी सफ़ेद कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

उसमें मारुति ड्राइविंग स्कूल लिखा हुआ है और छत पर एक फैन लगा हुआ है।

एक ने ब्लैक कलर का पेंट पहना हुआ है।

व्यक्ति ने चेक वाला शर्ट पहना हुआ है।

पीछे बहोत सारे किताब रखा हुआ है। आगे सीसा का बना हुआ है।

और एक आदमी ने ब्लैक कलर का पैंट और टी शर्ट पेहना हुआ है जो मिरर के सामने खड़ा है।

देवघर ब्रांच लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश दोनों में।

इस पर लिखा हुआ है ऑल काइंडस आफ ड्राई फ्रूट्स होलसेल एंड रिटेलर ।